मेडिसिन का शॉप लगता है अह मेडिसिन का शॉप ।

दो एक लड़का बैठा हुआ है और एक लड़का उसका--

बाल काट रहा है और एक बाहर में लड़का बैठा है जो कि अपना फोन चला रहा है।

जो कि एक एक वर्कर है जो कि हमें--

एक ग्लास का ये है उसमें ज्वैलरी कुछ कुछ दिख रहा है बैंगल्स कुछ नेकलेस हैं।

अ मैन मार्के मैन यह लगता है।

आसपास में अम् स्टॉल देख रहे है एक लोगों का। लोगों की भीड़ भी देख रही है।

चांदी के और एक बड़ा रखा हुआ है उसे का छोटा रखा हुआ है और उससे भी एक छोटा रखा हुआ है।

और बहोत सारी मशीनें रखी हुई है।

कुछ कुछ गाड़ियां दिख रही हैं और आसपास मे कुछ पेड़ दिख रहे है।

एका छोटा सा ये ये टाइप का बना हुआ है और यहां पर--

ये एक बच्चों का क्लीनिक लगता है आसपास में बहुत सारे कार्टून के पिक्चर और--

सामने एक सेंटर टेबल हैजहाँ पर कुछ-कुछ सामान रखे हुए हैं।

और कुछ मशीनें रखी हुई है वहाँ पर और सामने में एक चेयर हैबैठने के लिए एक लंबा सा ये टाइप का है।

बहोत ही सुन्दर एक कहना जा रहा है। पहाड़ के पीछे भी एक पहाड़ दिख रहा है और --

सुंदर सा दिख रहा है साथ में कुछ बादल भी दिख रहे हैं।

ये किसी के घर के बाहर का है आ गेट का पिक्चर है वाइट कलर का घर है ब्लैक कलर का--

गेट है सामने स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैऔर उसके पीछे एक लंबा सा--

यहाँ पर कुछ-कुछ चीजें रखी हुई है प्राचीन चीजें--

कुछ टाइम के जो बर्तन होते हैं वो रखे हुए हैं।

यहाँ पर एक रोड दिख रहा है और एक सामने में मॉल दिख रहा हैऔर वहाँ पर कुछ-कुछ ब्रांड दिख रहा हैजैसे बाटा के ब्रांड और--

ये एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैंऔर ऊपर की सीलिंग में वाइट सफेद लाइट लगी हुई है।

और सामने में एक वाइट कलर की फोर व्हीलर रखी हुई है।

जिससे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं ये शायद न्यू ओपन हुआ है बैलून टंगे हुए हैं।

और परिसर पूरा खाली देख रहा है अं यहां बहोत अच्छे से टेबिल पे सजा कर सब चीज रखा गया है।

हाथ से कुछ पोज बनाने का कोशिश कर रहा हैशायद।

जो सूरज का जो शैडो हैवो पानी पे दिख रहा है।

बाहर में एक वाइट कलर का वाशिंग मशीन दिख रहा हैऔर एक फ्रिज दिख रहा है।